एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखा --

यहां पर कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

येलो कलर की दीवारें नजर आ रही है।

यहां पर बहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई--